का साउंड क्वालिटी बहोत अच्छा है कुछ बॉक्स बड़ा है कुछ बॉक्स छोटा है।

छोटा छोटा फिश दिखाई दे रहा है ये सब तजा फिश है दोकान में।

ये हमारे इलाका का एक नदी है। नदी के बाढ़ में बोट खड़ा है। बोट में कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है।

दूर में एक बड़ा मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है एक लैंप पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है मंदिर के सामने एक लम्बा-सा सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के चार पांच में बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है इस मांदिर में रोज बहुत भक्तो का भीड़ होता है।

अ ग्रे कलर की है पहाड़ में बहुत सारे --

इधर एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के दो पास में बहुत सारे कार खड़ा है चार पास में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

इधर एक सड़क दिखाई दे रहा है एक बस खड़ा है एक बस चल रहा है एक लोग बस में उठ रहा है चार-पांच में कार भी चल रहा है।

इधर एक फारेस्ट दिखाई दे रहा है फारेस्ट बहुत बड़ा है बहुत पुराना है सामने --

किकेट खेलने के लिए ये आती है किकेट ग्राउंड बहुत सुंदर हे ।

चार पास में छोटा-छोटा हाट भी दिखाई दे रहा है इधर रोज बहुत सारे लोग घूमने के लिए आती है।

इधर एक जिम सेंटर है। जिम सेंटर बहुत बड़ा है। सामने एक लड़का सेल्फी खींच रहा है। चार-पांच में बोहोत सारे लड़का है बोहोत सारे मेसिंस है।

दूर में एक लोग गान गा रहा है चार पांच में बहुत सारे म्यूजिशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है।

ये हमारे इलाका का एक पोस्ट का ऑफिस है ऑफिस बहुत बड़ा है।

ऑफिस के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहा है ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है ऑफिस गेट के बाहर एक लोग बाइक से जा रहा है।

इधर एक कॉलेज है कॉलेज बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है।

इधर एक गेरेज दिखाई दे रहा है इस गेरेज पर अच्छा गाड़ी सर्विस होती है सामने एक मोटर बाइक में एक लोग --

पेड़ की नीच में एक ईट का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। एक गोल पोस्ट भी दिखाई दे रहा है। इस--

ये हमारे इलाका का एक पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस बहुत छोटा है पोस्ट ऑफिस के अंदर दो चेयर दिखाई दे रहा है।

इधर एक कैफ़े है कैफ़े बहुत बड़ा है इधर अच्छा कॉफ़ी स्नैक्स शूप बहुत सारे स्नैक्स मिलती है सामने कुछ चेयर एक टेबिल दिखाई दे रहा है।

इधर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है। बिल्डिंग में एक अनुष्ठान हो रहा है। बिल्डिंग की चार-पांच में बहुत लाइटिंग से सजाया हुआ है। बिल्डिंग की सीढ़ी में कुछ लोग खड़ा है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है दुकान के सामने एक बाइक भी खड़ा है इस दुकान में रोज बहुत भीड़ भी होता है।

इधर एक पर्वत की गुहा है गुहा बहुत बड़ा है बहुत पुराना है चार-पांच में बहुत पत्थर की टुकड़ा है दिखाई दे रहा है एक लोग खड़ा है।